और ऐ अ-मंदिर के चारो ओर से एंगल लागे हुए है ओर एंगल देखने में बहुत अच्छे लगे हुए हैं। केले के पेड़ भी लगे हुए हैं और एक खंभा भी लगा हुआ है।

और एक टीचर है। वो ही सिखा रहा है। यहां पे और ये साइड स्कूल के साइड में चारों ओर से रेलिंग उठी हुई है। यहां पे पार्क वगैरह भी बना हुआ है। देखने में बहोत ज्यादा सुंदर लग रहा है।

गुलाब वगिरे के फूल लगे हुए हम्म यहाँ पे।

ये चित्तीदार घोड़ा यहाँ पे हिरन वगैरह दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे जाल वगैरह लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है जो यहाँ पे इसके अंदर ये सारे जानवर बंद होते हैं।

समुंदर है। ये समुंदर देखने में बहोत बड़ा है। बहोत सुंदर भी लग रहा है और यहाँ से साफ नज़र भी आ रहा है। ये पानी इसका पानी बहोत ज्यादा साफ है।